यह एक मीठाई का दुकान है मिठाई की दुकान बहुत ही लाजवाब मिठाई रखी गई है।

और इस मूर्तिया में नारी ज्यादा दिख रही है आपने कला नृत्य का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक मच्छी बाजार है जहाँ छोटे मछली बड़े मछली और उनसे भी बड़े मछली बेचा जा रहा है ये इस मछली को--

मस्त दिख रहा है बच्चा खुशी से मस्त झूल रहा है।

मेरे को और नर्स और डॉक्टर अपना दवाईयां ले रहे है।

और ये बहुत पुराना जैसा लग रहा है क्यों की इस में काई जम गया है काला पड़ गया है।

और पुस्तक क का नाम है य एव्री मैन एस वॉर कर के रखा गया है।

मैं भी स्वछता वारियर हूँ करके रखा गया है इसे वो को फोटो को मस्त दृश्य--

जहाँ जी सन सेयर और हेयर स्टाइल और ब्रिडेल मेकअप किया जाता है जो की शादी में--

और तालाब एकदम शाम के समय में बहुत सुन्दर दिख रहा है जब सूरज डूबता है तो शाम--

जोकी बच्चे एक दम बहोत ही शानदार रूप से निभा रहे है और बना रहे है ड्राइंग शीट पर--